इधर एक ग्रीन बोर्ड भी लगा हुआ है तथा कुछ --

यह इमेज भी किसी सेंटर की नजर आ रही है।

ग्रीन कलर की दीवार से और--

इधर जो घर बना हुआ है वो रेड और वाइट कलर का बना हुआ है।

यह किसी पार्क का ही होगा जिसके पीछे बहुत सारी हरियाली नजर आ रही है।

एक खेलने वाला मैदान बना हुआ है।

तथा ऐसा लग रहा है कि यहां बारिश हुई है।

यह इमेज किसी पार्क की लग रही है।

और बैनर भी है ऊपर माताजी का।

यह इमेज भी किसी पार्क की लग रही है।

यह भी किसी मनोरंजन वाली जिया लग रही है।

तथा कहीं कहीं पे पानी भी नजर आ रहा है।

था कुछ कांच के ग्लास भी रखे हुए हैं और कुछ गमले भी रखे हुए हैं।

और दो तीन आदमी है और एक दो आदमी गाड़ी से जा रहे हैं।

यहां पे कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा है।